और फूल भी लगाया गया है डेकोरेशन का मंदिर सिल्वर कलर का है।

पहाड़ के नीचे एक लड़का है लड़का--

बहुत सारा चेयर लगा हुआ है और--

और तीन सोफा एक टूल लगाया गया हैं।

घर के अंदर बहुत सारा--

योगा कर रहे हैं और एक करा रहा है।

कुछ बोरे में भी सामान रखा हुआ है।

और बाइक भी रखा हुआ है।

और दो-तीन आदमी भी खड़े हैं।

और वहाँ उस पर पुल बनाया गया है।

पुल पर आदमी बैठा हुआ है।

बहुत सारा पेड़ भी लगाया गया है।

रूम के अंदर बहुत सारा बेड भी लगा हुआ है।

इस फोटो में सूरज भगवान दिखाए गए हैं।

और डस्टबिन भी डाला हुआ है।

इस फोटो में ग्रीन कलर का टेंपो दिखाया गया है।

बहुत सारे टेंपू भी है।

काउंटर भी लगा हुआ है।

बहुत सारा ग्रील भी लगा हुआ है।

लाइन भी खींचा हुआ है।

ये रेड कलर का डब्बा भी रखा हुआ है।

लाइट भी लगा हुआ है एक आदमी उस पर बैठा हुआ है।

और वहाँ पर एक स्कूटी लगी हुई है।

पार्क के आरी आरी--

और झुला भी लगा हुआ है।

इस फोटो में रेस्टोरेंट दिखाया गया है।

आदमी बैठा हुआ है और ए_सी भी लगा हुआ है।

लाइट भी लगा हुआ है।

और दुकान के अंदर कपड़ा भी है।

और वो और मोर भी है।

इस फोटो में पहाड़ दिखाया गया है।

हरा कलर का पेड़ भी बहुत सारा लगा हुआ है।

लाइट बत्ती लगा हुआ है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाया गया है।

उस पर दो आदमी खड़े हैं।

हॉल के अंदर बहुत सारा चेयर लगा हुआ है ।

इस फोटो में सरस्वती माता को दिखाया गया है।

और वहाँ पर एक हारमोनिया भी रखा हुआ है।

बहुत सारा चेयर लगा हुआ है।

और लाइट भी चल रहा है।

चेयर सिल्वर कलर का है।

और एक लड़का बैग लिया है बैग ब्लू कलर का है।

इस फोटो में एक घर दिखाया गया है घर--

और रेलिंग भी खींचा हुआ है।

इस फोटो में बड़ा सा फेल दिखाई दे रहा है।

और एक लड़का बैठा हुआ है।

बगल आरी आरी पेड़ भी लगा हुआ है।

से रेलिंग खींचा हुआ है।

सूरज भगवान भी दिख रहे हैं।

मॉल के अंदर बहुत सारा कपड़ा भी मिल रहा है।

बैलून भी टंगा हुआ है।

इस फोटो में एक क्रॉकट का घर दिखाया गया है।

और वहाँ पर दो चेयर लगा हुआ है।

इस फोटो में एक रिक्शा दिखाई दे रहा है।

ये रिक्शा पर एक आदमी बैठा हुआ है।

रेड कलर का लहंगा पानी है।

इस फोटो में एक हॉल दिखाई दे रहा है।

और किताब में रखा हुआ है।

इस फोटो में वाइट कलर का घर दिख रहा है।

ग्रीन कलर का रेलिंग भी खींचा गया है।

और दो बस लगा हुआ है।

घर का कलर वाइट है।

वाइट कलर का बॉल भी लगाया गया है।

और लाइट भी दिख रहा है सूरज भगवान भी दिख रहे है।

और फूल भी लगाया गया हैरंग बिरंग का दो आदमी वहाँ पर खड़े हैं।

इस फोटो में एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

और गार्डन में एक छोटा पेड़ भी है।

बस के अंदर बहुत सारा आदमी भी है और एक आदमी खड़ा है।

और ब्लू कलर का गमछी लिया हुआ है और पेड़ भी है गाड़ी सड़क पर खड़ी है।

ऊपर गिलास भी रखा गया है।

बास से घेरा हुआ है।

एक टूटी हुई गाड़ी लगी हुई है।

पाँच पंखे लगे हुए हैं।

और गमची भी ले रखा है।

और वहाँ पर लाइट भी चल रहा है।

बाहर का कलर वाइट है।

दो गाडी लगी हुई है।

और एक लेडीज बैठी हुई है।